जिम में बहुत सारे मशीनें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं जिम में बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये मेरे सामने एक अस्पताड़ दिखाई दे रहा है अस्पताड़ में बहुत--

ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।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

यहां पर एक खिड़की भी लगी हुई दि--

यहां पर बहुत सारे लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक मेज भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

पर बहुत सारे पर्दे भी दिखाई दे रहे हैं।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

शोरूम पर कुछ ब्लेजर भी दिखाई दे रहे हैं शोरूम पर येलो कलर का ब्लेजर भी दिखाई दे रहा--

बैंक का ए-टी-एम भी दिखाई दे रहा है ए-टी-एम के दरवाजे पर शीशा लगा हुआ दिखाई--

के सामने मेट्रो दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग में लोहे की ग्रील भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक लोहे का गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक जिम दिखाई दे रही है जिम में बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ लोग जिम भी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं जिम के यहां से एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बैठने के लिए एक बेंच भी दिखाई दे रहा है।

सारा मसाला भी वही भर रहे हैं यहां पर बहुत सारे सरिए भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक एकेडमी दिखाई दे रही है इसका नाम सवेरा डिफेंस एकेडमी दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक स्टेज प्रोग्राम चलता हुआ दिखाई दे रहा है।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

यहां पर दो आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

रोड पर वाइट कलर की पट्टी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां बर्गर का पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है बिल्डिंग का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है।